इस पिक्चर में छोटे-छोटे घर दिख रहें हैं दूर-दूर में हैं घर दिख रहें हैं व्हाइट ब्लू पिंक ऐसे कलर में हैं।

यहा पर कई छोटे-छोटे मछली दिखाई दे रहे है बीस पच्चीस मछलिया मरी हुई पड़ी है दिखाई दे रहे है।

कई मछली कट चुकी है कई मछली नही कटी है लेकिन सभी मछली मर गयी है ऐसा दिखाई दे रहा है।

पन्नी में पैक है और रस्सी से बंधे हुए है और खिड़की भी दिखाई दे रहे है सब पन्नी से पैक है।

यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़े बनी हुई हैं कागज़ के डिब्बे वाले स्टार वाले कुछ-कुछ चीज़े बनी हुई हैं खेलने के लिए।

छोटे-बड़े कई पेड़ दिख रहे है तालाब दिख रहा है सड़क दिख रहा है।

यह एक जिम है कसरत करने का दो आदमी दिख रहें हैं एक भैया जॉगिंग कर रहें हैं मशीन पे एक भैया भी बेठे-बेठे कर रहें हैं।

यह दुकान हैं यहां बिजमेंटल रखे हुए हैं फ़ुटबॉल हैं और बहुत सारे कुछ-कुछ समान रखे हुए हैं।

दीवाल भी पेन्ट हुआ है रंग बिरंगा से और बहोत सारे आदमी एक जेंट्स है।